इस इमेज में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो मारबल का बना हुआ है आगे में घड़ी है।

कुछ अलमारी है जो सामान रखी गई है आगे एक आदमी है।

कुछ बना हुआ है और जिसके नीचे --

और छोटे-छोटे पेड़ है जो जिसके पत्ते दिखाई दे रहे है जो है कलर के है एक बड़ा-सा--